मुझे इस फोटो में सामने को एक बिल्डिंग लगी बस दिखाई दे रही जिसमें कांच का गेट लगा है।

छत्तीस एकसठ एक सौ पांच लिखा हुआ सामने की ओर --

हुई दिखाई दे रही है वाइट कलर की लाइटिंग जलती हुई

ऊपर दो के साइड लाइटिंग जल लगी हुई दिखाई दे जो पन्नी चढ़ता सामने कई सारी खिड़कियां एक लाइन से कई सारे भी दीवाल में नीचे ओ ऊपर दो पन्नी का का ब्लैक कलर की दीवाल में पुती हुई दिखाई --

इधर खिड़कियों के इधर पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे और इस साइड दीवार में व्हाइट कलर के

खाली गमले-वमले रखे दिखाई दे रहे हैं सामने कोई नीला आसमान दिखाई दे --

मुझे इस फोटो में सामने को एक बेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने के ऊपर की ओर कई सारी लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही है रात का समय दिखाई दे रहा है संदीप लिखा है दुकान से--

के सामने आजू बाजू कई सारे पर्दे वाइट कलर के परदे वरदे लगे हुए दिखाई दे रहे--

गोडाउन को कॉल कॉलेज बना हुआ दिखाई दे रहा बिल्डिंगे बनी देख सकते

इस पूरे लेवल में पानी भरा हुआ दिखाई तेज बारिश के कारण बहोत सारा पानी भरा हुआ दिखा--

एक इंसान सामने की ओर नीले कलर की शल्ट और हेडफोन साइड में एक गुड़िया साइड में खड़ी हुई पीछे गुड़िया खड़ी हुई दिखाई दे--

मुझे सारी अंगूठियां कई सारे चीजें किसी मंदिर की घंटियां रखी हुई दिखाई दे रही सामने बॉक्स वॉक्स खुला रखा--

साइड मे जैसा इलेक्ट्रॉनिक की मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है।

पैसा है नीले कलर की सीटे लगी हुई है उपर--

कई सारी सीटे लगी हुई दिखाई दे और कई सारे नीले कलर की पर्दें लगायें गए--

फुल माला चढ़ाए हुए दिखाई दे रहे दिखाई दे रहे--